मोबाईल की शॉप दिख रही है जहाँ पर तीन खंड दिख रहें हैं एक मे मोबाईल रखें हुए है।

कुछ बड़े बड़े पेड़स दिखाई दे रहें हैं झोपड़ी जैसा बना हुआ दिख रहा है पीछे दीवार भी नजर आ रही है।

दिवारे बांस की बनी दिखाई दिखाई दे रहा है पीछे खुला दिखाई दे रहा है गेट के ऊपर कॉफी कैफ़े किंग --

एक चर्च दिखाई दे रहा है उसके गेट के ऊपर क्रॉस का साइन --

एक स्टाल दिखाई दे रहा है उस पर रखा कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

उनके पीछे बुक के बहुत सारे शेल्फ बने हुए हैं जिनमे अलग अलग बुक दिखाई दे रही हैं।

एक पीछे भी दिखाई दे रहा है जिसने नीले कलर की टी शर्ट पहन रखी हुई है एक कुछ प्लेटस दिखाई दे रही है कुछ मशीने दिखाई दे रही है।

एक कच्ची सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है सड़क के दोनों तरफ अ ज़मीन --

एक बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जिसका कलर सफ़ेद कलर का है सफ़ेद रंग है।

बोहत सारे पहाड़ दिखाई दे रहें हैंपहाड़ पर एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

नीचे कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है बीच में हरे कलर का और राइट साइड रैड कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।